इस फोटो एक ग्राउंड की है ये क्रिकेट ग्राउंड है।

ये फोटो के अंदर कुछ मेंटेरियल लैप लोहे के कुछ वस्तुय बनाई गई है ये बोहोत ही अच्छी है और बोहोत ही शानदार --

इस फोटो के अंदर एक फो फोर व्हीलर गाड़ी है जो एक मिस्त्री इस गाड़ी को ठीक कर रहा है।

इस फोटो के अंदर कुछ मजदूर कुछ कारीगर अपना काम कर रहे हैं और ये फोटो बहोत ही शानदार है।

कस्टमर खड़ा है और कुछ चीजें बहोत सारी यहां पे खाने की चीजें बहोत ही अच्छी दिखाई गई है।

जिसके अंदर डेटॉल साबुन कोलगेट बहुत सारे घरेलू सामान रखे हुए हैं फोटो बहुत ही सुंदर दिखाई गई है।

मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर मेरे जयपुर में स्थित है इसको अल्बर्ट हॉल भी कहते हैं बहोत ही प्रसिद्ध हॉल है।